सामने एक फर्श दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का दिख रहा है। ऊपर कुछ दुकानें दिख रही हैं जो कांच की बनी हुई दिखाई दे रही है उसकी छत का रंग भी सफेद है।

उसके आसपास कुछ चित्र बने दिख रहे हैं। उसके ऊपर एक जाली बनी हुई दिख रही जो गैलरी टाइप में दिखाई दे रही है। पास में एक और घर दिखाई दे रहा है उसके पास पीले रंग का कुछ रखा हुआ।

इसके ऊपर दो चित्र बने हरे रंग के दिख दे रहे हैं। इसके ऊपर छत की दिखाई दे रही है। कुछ तार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसके अंदर हमें एक स्टेशन दिखाई दे रहा है जहां लम्बी लोहे की बनी पटरी दिखाई दे रही हैं।